यह एक लोगप्रिय और किफ़यती तारिका है फल बेचने का खास कर उन जगाओ पर जहां आदिक भिड होती है।

कार्य आंतरिक दहन इंजन या इलेक्ट्रॉनिक मोटर से चलती है कार का दिल इंजन होता है जो इंजन को यांत्रिक ऊर्जा बदलता है।

जिसकी स्थापना दो हजार सत्रह मे हुई थी ये विश्विद्यालय बीकानेर जोधपुर अजमेर और जयपुर कुछ जीलों को छोड़कर --

घर का एक निजी स्थान होता है।

यह एक कोई शोरूम है एक इस्ता स्थान जहां किसी कंपनी के उत्पादों या सेवाओं को प्रदर्शित किया जाता है।

स्वीकार करती है रिन्ह प्रदान करती है और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है बैंकों का मुख्य काम है लोगों के पेशे को सुरक्षित रखना --

और यह सामने बेड रखी हुई है यहां पर मरीज को भर्ती किया जाता है बेड रेस्ट के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

हरित क्षेत्र होता है जिसमें और सब पैदल चलने के रास्ते होते हैं और उसमें अनेक प्रकार के व्याम करने के लिए भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाती हैं।

कलरों की चीजें देखने को मिलती है।

कुर्ते सभी प्रकार की चीजें यहां पर कुछ चीजें सस्ती भी मिलती है।